यह दिखाई दे रहा हे एक हॉस्पिटल और दो औरते एक ऑटो और एक बिल्डिंग और एक

लाल कलर का पेंट मेनी गेट के ऊपर और सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे पीले और केल कलर का पेंट है|

चित्र में दिखाई दे रहा है खुली आसमान वायलेट कलर स्काई ब्लू कलर ब्लू कलर वाइट कलर का पेन दिख रहा है आसमान पता और घास और झाड़ और पत्थर की दीवार बनी हुई है|

चित्र में दिखाई दे रहा है येलो कलर और विंडो को पर ग्लासेस और सोफा है रेड कलर और वाइट कलर के कवर सहित पिस है और सोफा है और प है लड़ाई--

चित्र में दिखाई दे रहा है एक में रोड है और शॉप लिख रहे हैं ऑटो और स्कूटर और जा रहे हैं शाम हो रही है लाइट पर है और आसमान और थम वाला इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स दिखाइए--

इस चित्र में दिखाई दे रहा हे एक बिल्डिंग आहे और दस खिड़कियाँ आहे और बोर्ड आहे एक खली आसमान आहे ये कल के विंडोज़ को ग्लासरिंग

इस चित्र में दिखाई दे रहा वो बहोत बड़ी दिवाल हे और दो कमान हे और खली हुई आसमान हे लाल फत्थर हैं लाल मट्ठी हैं। वह फत्थर से बना--

चित्र में दिखाई दे रहा है वाटरफ़्लो